और पीछे टावल भी सूख रहे हैं।

यहां पर एक मैन भी दिखाई दे रहा है और वो रेड कलर की चेयर पर बैठा हुआ है।

सामने देखिए यहां पर अलमारी में बहुत सारी पेन --

व्हाइट कलर की इसकी टाइले हैं।

सामने देखिए यहां पर बहोत सारी बुकसे रखी हुई हैं और यहां पे बहुत सारे मेन भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने देखिए यहां ट्रॉली बैग्स रिपेयर टी_बी_आर कप बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर दो मेन भी दिखाई दे रहे हैं शीशे पर हमारे देश के झंडे भी छपे हुए हैं।

सामने देखिए एक दुकान है।

सामने दिए गए एक नदी किनारे झील है।

सबने हमारे देश का झंडा हाथ में लिए हुए हैं।

सामने एक वाश बेसिन भी लगा हुआ है।

और दीवार पर दो पेंटिंग भी टंगी हुई है।